पर्दा दिखाई दे रहा हैं सफेद और महरूँ कलर का बधारी वाला। दीवाल दिखाई दे रही है दो जिसमे एक मे सफेद और एक मे नारंगी कलर हे।

यहाँ एक बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ प्लेयर्स खड़े हुए है हाथ में बैट लिए हुए है नी पैड पहने हुए है मा मास्क लगाए हुए है हेलमेट पहने हुए है।

एक काउंटर दिखाई दे रहा हैंसोकेस बना हुआ हैं उसपे उसपे बोटल्स रखा हुआ हैं कोलडरिंक्स की पानी की इत्यादि ऊपर पंखा लगा हुआ हैं गेट दिखाई दे रहा हैं जिसमे कांच लगा हुआ हैं।

पीछे भवन दिखाई दे रहा है सफेद कलर का ऊपर चाँद भी दिखाई दे रहा है जोकि डूबता हुआ है। आसमान दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग पे बोहोत सारे पोस्टर लगे हए है जोकि नीले सफेद पीले इत्यादि --

यह एक पार्क दिखाई दे रहा है कुछ खजूर के पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ बड़े छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक लेडिस दिखाई दे रही है बैठी हुई टॉप दिखाई दे रहा है छोटा -सा फोर विलर दिखाई दे रहे है टू -विलर दिखाई --

यहा एक रास्ता दिखाई दे रहा है दोनों तरफ पेड़ लगे हुए है क्यारी बनी हुई है। छोटे बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।